और मकान में बहोत सारी खिड़कियां हैं जैसे की दरवाजे हैं।

और कुछ भैस भी हैं उसमें लाइट फिटिंग भी हैं पास में एक मकान हैं।

और साइड में एक छोटी सी शटर भी दिख रही है।

और साइड में बैग बैग रखे हुए हैं अपने अपने और अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं।

बहोत सारे बैग ठगे हुए हैं जिसमें--

और प्लास्टिक के बहोत सारे टॉयज दिख रहे हैं।

और उस बच्चे की हेयर स्टाइल के लिए--

एक ग्राउंड में बड़ी सी मशीन रखी हुई है जिसको मिल के--

दो क्रेन उठा रही है और साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ है इसके बाजू में--

टेबिल के पीछे देखो दूल्हा दुल्हन वाली बहोत सुंदर पिक्चर लगी हुई है।

अंदर तीन लड़के हैं और दो लड़के चेयर पर बैठे हुए हैं।

उसके बाजू मं आजू बाजू हरे हरे बड़े बड़े पेड़ हैं।

और पत्थर पे ऊपर छोटे छोटे से हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

और ऊपर से नीचे तक एक पाइप आया हुआ है।

और बाजू में ही एक ग्रीन कलर पेड़ है।

पेज रखा हुआ है पेज के ऊपर पानी की बॉटल रखी हुई है।

सड़क पे एक वाइट कलर की कार चल रही है।